बेड कुर्सी सोफा पड़ा हुआ है| यह लोज किराए पर दिया जाता है| लोग यहाँ घुमने के लिए--

ये व्यक्ति जंगल में घूमने के लिए आया है।

इसकी ऊपर की खोपड़ी बहुत मजबूत होती है खतरा होने पर ये खोपड़ी के अंदर --

एक लकड़ी की बनी हुई ट्रॉली है जिसमे बहुत सारे फल रखे हुए है।